हमें जिम भी लगी हुई दिखाई दे रही है यहां पर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक रोड दिखाई दे रहा--

यहाँ पर बिल्डिंग का कलर येलो कलर का दिखाई दे रहा है।

कलर ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ लोग बाल काटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।